इस चित्र में बहोत सारे टीवी लगा दिखाइ दे रहे। साबी काले कलर किस काइस दिखाइ दे रहा है। और ऊपर एलजी नाम का लाल कलर का बोर्ड दिखाइ दे रहा--